वहीं एक रेड रंग की टी शर्ट में व्यक्ति खड़ा हुआ है और अपने आप को सामने देख रहा है।

हमारे देश के फ्लैग लगे हुए हैं और बीच में तीन शेर और ये हमारा सक्सेस पॉइंट है।

यह एक जंगल का सीन प्रतीत होता है जो कि काफी सुंदर दिख रहा है।